फॅमिली रेस्टोरंट है बाहर जोकि टाइल्से उसके ग्रीन है।

टेबल है जो की रेड है एक प्लेट रखी हुई है जो की व्हाइट है पीछे लोग खड़े हुए है दो ब्लॅक टी-शर्ट पहना और लाइटिंग ग्रीन हरी है।

उसके अंदर लिखा हुआ है पीले और व्हाइट कलर से पिछे जो घर है जोकि ग्रीन और पीला है।

ग्रीन घाँस दिखाई दे रही है और सामने दीवाल है जो की ब्लॅक है। सामने जो लिखा है गोल्डन कलर से लिखा है और पीछे जो पेड़ है जो की ग्रीन है बहुत बड़ा है।

पोस्टर लगा हुआ है जो की व्हाइट है जो उसके लोहे के डंडे है जो की वे कत्था है।

ग्रीन पेड़ है उसके पीछे छोटी सी नदियां है जो की ब्लू पानी है उसके पीछे ग्रीन घास है।

आजूबाजू और एक परदा लगा हुआ है जोकि कथे कलर का है अंदर का सीन भी बहुत अच्छा है।

पेड़ है जोकि बहुत त बड़ा पेड़ है पीला है घर बना हुआ है बहुत बड़ा जोकि रेड और व्हाइट लगे हुए है गाड़िया रखी है दो।